जहाँ पर तीन कोंकृंत के झालर हैं इसका वालपेपर भी बोहुत सुंदर हैं बगल में एक सर्व आदमी खड़ा है एक वॉश बेसिन भी नजर आ रहा हैं।

ये बेटमिंटन रेकेट का कोर्ट है यहाँ कई लोग सारे लोग बेटमिंटन खेल रहे हैं| ये इंडोर हाउस इंडोर हाउस में खेलने का प्रबंध किया गया है चारो तरफ पंखे लगे हुए हैं।

ये एक रेस्टोरंट है| इसका नाम एस आर रेस्टोरेंट है एंड पिज़्ज़ा पार्लर है।